गेट पर दो लायन का स्टैचू बना हुआ है।

उधर बहोत सारा क्रीम है।

उधर बहुत सारा हॉर्लिक्स है।

इस पिक्चर में एक जिम का फोटो दिखाया गया है।

इधर एक घर का फोटो दिखाया गया है।

उधर ब्लू कलर का टंकी है।

इस पिक्चर में एक डाइनिंग हाल है।

इधर बहोत सारा डाइनिंग टेबल्स है।

ये एक ऑफिस का पिक्चर दिखाया गया है।

अ उधर सारा बहोत उधर बहोत सारा बैठने के लिए जगह है।

उधर एक अंकल फोन पे बात कर रहा है।

अंदर एक कार पार्क किया है उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है।

बहोत बड़ा बड़ा रूख है।

सिर पे हेलमेट पहना हुआ है और एक इंसान लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है।

उधर और दो आदमी जा रहा है।

सब लोग बैग बैग बुक कर रेडी है ग्रुप ग्रुप होकर बात कर रहा है।

उधर एक मिरर है बड़ा बड़ा सा--

साइड में झाड़ जंगल है।

रेड येलो ब्लू व्हाइट अ पर्दा लगाया है।

उधर बहोत सारा फीज है।

इधर एक बच्चा लोग अ ड्राइंग कर रहा है।

उपर में बहोत सारा फूड का तस्वीर लगा हुआ है।

उधर फूडोस लिखा हुआ है उधर बहोत सारा पानी दिख रहा है।

ये एक होटल का पिक्चर है।

अदर बहोत सारा बैलून से डेकोरेशन किया है।

अदर बहोत सारा फूल का डेकोरेशन किया है।

उधर बहोत सारा लोग बैठा हुआ है।